और इस मंदिर के दर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा मे लोग भी आए हुए हैं।

जिसमे की इसके ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है और ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है।